दी गयी तस्वीर एक ब्यूटी पार्लर की है यहां पे --

और साफ दिखाई दे रहा है।

फब्बारे की दिखाई दे रही है यहां नहाने के लिए अलग अलग डिजाइन के शावर लगाए गए हैं।

यहां पे ऊंची चोटी पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है।

यहां पे एक फव्वारा लगा हुआ है चारों तरफ पानी में --

ऑफिस की है इसको डी_आर_एम ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है।

यह बच्चों के लिए एक अच्छा स्थान है यहां पे बच्चों को--

रात्रि में हमें आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा है चारों तरफ सफाई है।